योगा कर रही है जोकि ये अपनी अपनी एक एक चटाई पर बैठी हुई है जिसमें इस सब की चटाइयां अलग अलग कलर की है।

यह छव किसी मैदान के पास की है जिसमें कि सामने की तरफ एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में एक--

इस छब में एक आइसक्रीम दिखाई दे रही इसमें की तीन चार प्रकार की आइसक्रीम रखी हुई है और ऊपर से स्ट्रॉबेरी और फालूदा पड़ा हुआ है।

ये तरफ बनी हुई है जिसमें कि बहुत सारे व्यक्ति नीचे की तरफ स्विमिंग पूल में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यक्ति अपने हाथों में --

रखा है और जिसके नीचे लाल चादर बिछी हुई और साइडों में--

और ऊपर की तरफ टीन तनी हुई है और टीन में गमले लटके हुए है और--

कर रहा है जिसने नीली सदरी और वाइट शल्ट ब्लैक पैंट पहनी हुई है और सर पर कैप रखे हुए है अंदर की तरफ--

मंदिर के सामने की तरफ स्टील के पाइपों से दीवार जैसा बनाया गया है और उसके आगे एक दान पात्र--

बड़ी साफ दिखाई दे रही है जिसको सजाने के लिए सफेद और नील गुब्बारो का प्रयोग किया गया है।

और उस दुकान तक पहुंचाने के लिए जीने बने हुए हैं और नीचे एक बेसमेंट में भी दुकान दिखाई दे रही है जिसके--

बाहर एक जनित्र खड़ा हुआ है और बाहर की तरफ एक डमी दिखाई दे रहा है और उसके अं--

यह छवि किसी बेकरी की है जिसमें कि एक व्यक्ति एक हाथ में कुछ--

फर्नीचर के अंदर बहुत सारी दवाइयां रखी हुई दिखाई दे रही है उसके साइड में एक--

की तरफ दीवार पर एक घड़ी एक एल_सी_डी और एक बूफर दिखाई दे रहा और उसके नीचे की तरफ मछलियों का--

सजावट फूलों से की गई और उसमें दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिसमें की एक पंडित जी दिखाई दे रहे हैं और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है पंडित जी ने व्हाइट कुर्ता--

और काउंटर पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है ऊपर की तरफ वाइट--

एक कि एक महिला और दो पुरुष हैं और एक का व्यक्ति का आधा हाथ दिखाई दे रहा है और--

व्हाइट और ऊपर नीला है और नीचे फर्श पर खड़जे बिछे हुए है और साइड में एक--

छवि में एक कैफे दिखाई दे रहा है जिसमें की बहुत सारे व्यक्ति बैठ--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

और आधे में हरी मैट बिछी हुई है और इसमें तीन मशीनें दिखाई दे रही है और दो व्यक्ति जिम करते हुए दिखाई दे रहे और स दीवार पर मिरर लगा हुआ और मिरर में बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे और इसमें डम्बल भी रखे दिखाई दे रहे हैं।

इस छवि में एक बिल्डिंग के बाहर आठ फोर व्हीलर्स खड़ी दिखाई दे रही हैं।

ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है और पूरे स्टेशन पर नीचे की तरफ टाइल्स दिखाई दे रही है और सामने की तरफ एक--

चारों तरफ डिवाइडर बनाया हुआ है डिवाइडर पे काला और पीला कलर है और पेड़ों को काटकर आकृति दी गई है और उसमें पीछे--

बाहर की तरफ एक बेम्बू दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ एक बाल्कनी है।

गेट की के बाहर के तरफ बहुत सारे गमले रखे हुए हैं और गेट के अंदर जाने के लिए एक दम--

कुछ गमले एक घर के टाइप के बने हुए हैं जिसमें ऊपर की तरफ नोंक निकली हुई।

कुछ गमले अह अह गोलाकार में कप के जैसे बने हुए हैं और सामने की तरफ इसमें एक झोपड़ी बनी हुई जिसमें भी गमले--

नीचे की तरफ इंटरलॉक्स लगी हुई और बहुत सारी बाइकें खड़ी हुई जिसमें उसे एक स्कूटर और एक --

हुए हैं और एक कोई लाइट दिखाई दे रही जिसमें कि पीछे की तरफ एक गेट जैसा कुछ दिखा--

काई दे रही। इसमें से एक ने अपने हाथ में फ़ोन उम्म पकड़े हुए और दूसरा भी अपने हाथ में फोन पकड़े हुए। ये अ ऊपर स् --

खड़े हुए है और कुछ व्यक्ति अपना कार्य कर रहे सामने की टेबल पर।

कुछ व्यक्तियो ने अपने हाथों में कुछ कागज पड़े हुए और सामने की तरफ एक अलमारी दिख रही--